चार लोग नीचे कि तरफ बैठे हुए हैं।

कई लोग ध्यान में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और इस दुकान में ब्लैक कलर का एल_इ_डी टी_वी दिखाई दे रहा है।

इस खेल के मैदान में कई सारे लोग खेल रहे है या खेल का मैदान हरा है।

जहां पर सफेद और काले रंग के कुछ टाइल्स दिखाई दे रही है और साइट्स में ऊपर जाने के लिए रास्ता दिखाई दे रहा है।

इस पार्टी में पिंक कलर के कपड़े से सजावट की गई है और हमें इसमें तीन झूमर लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बार्बर शॉप के अंदर दीवाल पर एक ए_सी लगा हुआ है।

इस फोटो में कुल तीन बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं और यह तीनों बिल्डिंगें ग्रे रंग से पुती हुई हैं।